यहां पे एक बैल बैठे हुआ हैं जोकि व्हाइट ब्लैक कलर का है यहां पर रेड कलर का घर है यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

जो देखने में और भी अच्छा लग रहा है गेट के सामने एक बैल है।

यहाँ से बादल का व्यूज़ अच्छा दिख रहा हैं जो की बादल अभी व्हाईट कलर का हैं यहाँ से पहाड़ का व्यू दिख रहा हैं।

एक पैर जो कि ऊपर हैं यहाँ पे बहोत सारे हरे भरे खेत पे खरियान में पौधे हैं।

यहां पे बहुत सारे ट्रक दिख रहा है जो देखने में रेड कलर का है जो वाइट कलर --

यहां पे कागज का कटिंग कर के रखा गया हैं जो देखने में सुविधा तरीका से अच्छा तरीका से सजाया गया हैं।